ये यहां पे आदमी वगैरा खड़े हुए हैं।

प्याज का सलाद है और ये यहां पे देख सकते हो।

ये यहां पे देख सकते हो ये मैडम दिख रही है।